ब्रेंच पे एक बाल्टी दिख रही हैं स्टूल रखा हुआ एक बैग दिख रहा है ब्रेन्च पे कैंची दिख रही है ब्लैक कलर की पॉलिथीन दिख रही पेहन रखी हुई दिख रही है और सामान दिख रहा है। लाइट लगी--

एक टंकी दिख रही नीले कलर की चिड़िया चलते हुए दिख रही है पानी कूदता हुआ दिख रहा है पहाड़े दिख रही है।

नाँव दिख रही हैं पानी दिख रहा हैं नदी-नदी के किनारे घास दिख रहा हैं लकड़िया वगैरा दिख रही हैं कीचड़ दिख रही जहाज दिख रहा हैं जहाज में रेड कलर के गेट दिख रहे हैं।

दुकान दिख रही है दुकान में लाइट दिख रही है पंखा दिख रहा है ट्यूबलाइट लगी दिख रही है अलमारी दिख रही हैपिंक कलर की दिख रहा है।

तीन ऐंगल दिख रहे है ऐंगल पे मोर की डिजाइन दिख रही है दीपक है साइद मूर्तियाँ दिख रही हैं ।